सामने स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही है उसपे खिड़की लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।

सामने यलो रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा है खिड़कियां लगी हुई नजर आ रही है।

एक शॉप दिखाई दे रहा है कांच का दरवाजा नजर आ रहा है व्हाइट कलर का बोर्ड नजर आ रहा है।

यह पेट्रोल पंप हैं जिसके दीवार का कलर ब्लू और व्हाईट हैं।

कुछ लोग पेट्रोल डालते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने स्टेज दिखाई दे रहा है जिसकी दरी हरे रंग की नजर आ रही है दो सीढ़ी बने हुए हैं लोहे के।

सामने व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें खिड़की बने हुए है एक बड़ा सा ग्राउंड फ्लोर में स्विमिंग पूल नजर आ रहा है रेड कलर का बलून दिखाई दे रहा है।

भूरे रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

फूलों से प्लास्टिक फूलों से सजे हुएं नजर आ रहे साइड में एक पेड़ दिखाई दे रहा है काले रंग का ग्रिल नजर आ रहा हैं।

सामने एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है जिसके बिल्डिंग का कलर व्हाइट और ग्रीन है ऊपर रेड कलर के बोर्ड में--

ब्लैक कलर का टेबल दिखाई दे रहा है।

सामने जिम सेंटर नजर आ रहा है बहोत सारे जिम की मशीनें दिखाई दे रही है डंबल रखा हुआ हैं।

तीन आदमी जिम करते हुए नजर आ रहे एक बड़ा सा मिरर दिखाई दे रहा है।

एक व्हाइट कलर की चेयर नजर आ रही है।

व्हाइट ऑरेंज रंग का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बाहर एक वाइट कलर का बड़ा सा गेट नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग कपड़े देखते हुए नजर आ रहे हैं दीवाल में एक फैन दिखाई दे रहा है खंड बने हुए हैं जिसमें कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

नीले रंग का है सामने एक बोर्ड दिखाई रहा है जिसमें इस_एम_टी परमिला--

सामने ये ग्रीन और ब्लैक कलर का गेट नजर आ रहा है।

अंदर कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर एक वाइट कलर का बोर्ड नजर आ रहा है। सामने में एक काले कलर की साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक शॉप नजर आ रहा है कांच की--

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं लैंप जल रहे है।

यह एक पेट्रोल पंप हैं व्हाईट कलर के बोर्ड में ऑरेंज और नीले रंग से इंडियन ऑईल लिखा हुवा नजर आ रहा हैं पेट्रोल पंप पे--

पिंक कलर की दीवाल नजर आ रही है सीढ़ी बनी हुई है जिसमें ग्रील दिखाई दे रही है।

बाहर चप्पल रखा हुआ नजर आ रहा है रस्सी बंधी हुई है जिसमें कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे हैं।